दरवाजा खुला है। सामने में टायर लाइन से रखा हुआ है।

सामने में एक चेयर है जो कि ग्रीन कलर है उसके सामने में दो आदमी खड़ा हैं।

इस तस्वीर में गार्डन को दिखाया गया है।

आगे मे एक पेड़ है जिसको फेंसिंग लगा के रखा है।

पेंटिंग का कलर है व्हाइट कलर पोज में है रेड कलर में भी है।

एक का ऊपर में कम्बल रख के है दूसरा टूल के ऊपर में खाली है।

आजा भी दिखाके हैं आधा जो शीशा से है।

जो अलग अलग कलर का अलग अलग कर शेफ कर रखे हैं बॉक्स बॉक्स में डिवाइस करके रखा हुआ है।

औरत लोग जो है ऑरेंज कलर का साड़ी पहन के है।

उसका नीचे में ब्रेड लाइन से रखके है उसका बॉक्स जो है सीसा से--

अंदर में तीन घर दिखाई दे रहा है दो पक्का घर है एक कच्चा है।

मुझे इस तस्वीर में रेस्टोरेंट रूम जैसा दिखाई दे रहा है।

हाफ वॉल बनाके है लकड़ी वाला वॉल है।

दो आदमी काम करके हैं एक आदमी खड़ा करके है।

और काम करने वाला क बीच में नाला है।

ऊपर में सोफा सीट का रखा है और छोटा सा पीलो है।

तस्वीर में कपड़ो के दुकान को दिखाया गया है कपड़ा दो हिस्सों में रखे है।

इस तस्वीर में रूम को दिखाया गया है जो कि वाल नहीं है।

उसका अंदर में चेयर टेबल रखे हैं बीच बीच में फूल भी रखे हैं।

कपड़ा जो अलमारी का अंदर में रख के है।

नीचे में भी रखे हैं।

उसे एक दिखा के है।

घर का सामने ऊपर में--

पानी का अंदर में भी पत्थर है ऊपर में भी थोड़ा सा जगह है उसमें पत्थर है।